जो एक खड्डा खोद रही है यहां पर एक बड़ा सा जनरेटर रखा हुआ है।

यहां पर छोटे छोटे स्टूल हैं।

दिखाया गया है कि यहां पर--

जो यहां पीले कलर के हैं और कु--

बैल्डिंग की जा रही है यहां पर तीन आदमी ऊपर बैठे हैं।

और यहां पर एक बड़ा सा सीसा लगा हुआ है।

पर एक बड़ी सी दुकान है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

जिसके अंदर यहां घर के आइटम रखे--

पर अगरबत्तियां है यहां पर मैगी --

इस फोटो में दिखाया गया है--

ये यहां पर एक बड़ा सा कैफे है।

यहां पर इन्वेंटर हैं बैटरी है और यहां--

यहां पर दुकान पर लिखा हुआ है एशिया कॉपियर यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक --

इस फोटो में दिखाया गया हैं कि--

पर बहोत सारे ट्रक जे_सी_बी खड़े हुई हैं।

यहां छत पर पंखे लगे हुए हैं।